ट्रेन तेजी से आ रही है और अगल बगल में रोड पे बैठने की जगह बनाई गई है और यहां के लोग बैठते हैं।

नीचे हरी कलर की कालीन बिछी हुई है और यहां कुछ शो कार्यक्रम चल रहा है।

और बालों में गजरा लगा के हाथ पीछे करके और चेहरे पे स्माइल करके अपना कोई डांस दिखा रही है।